एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

एक मकान दिखाई दे रहा है।

इसमें डिब्बों में कुछ सामान भर रखा है .

यह पीछे के तरफ का दृश्य दिखाई दे रहा है।